रोड पर बहुत सारे वाहन दिख रहे है जैसे ऑटो रिक्शा है।

अस्पताल का रूम दिख रहा है जहां पर डॉक्टर है।

और यहां पर बाकी असिस्टेंट जो इसके हैं।

और इन लेडी ने जो है व्हाइट कलर का मास्क लगाया हुआ है।

कुछ फोटोस दिए गए हैं कुछ लिखा गया है।

इस फोटो में मुझे एक जिम दिख रहा है बहुत ही अच्छा जिम है बहुत सारी चीजें यहां की जिम की रखी गई हैं।

ब्रैंडेड है सेल अभी लगी है स सेवन्टी पर्सेंट ऑफ है सेल ।

यहां पर एक मिस्त्री जो है लगा हुआ है काम करने एक मिस्त्री दूसरी तरफ है और दूसरी तरफ कम कर रहा है।

दुकान सी दिख रही है छोटी सी दुकान है यहां लिखा गया है।

तारा भोजनालय यह एक ढाबा है यहां पर खाना बने बनता है नाश्ता भी बनता है लंच भी बनता हैं और डिनर भी बनता हैं।

एक रोड दिख रही है और रोड से कुछ वाहन चल रहे हैं जैसे--

और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है।

इस फोटो में मुझे एक मैदान दिख रहा है जहां पर टूर्नामेंट चले हुए हैं अभी--

मेल जो है आगे गेट के पास देख रहा है।

जो है वोल्वो टाइप की बसे है या स्कूल --

वेट लिफ्टर मशीन से उठाया जा रहा है।

बरामदा दिख रहा है यहां पर फर्श पर टाइल लगी हुई है और साइड में बाउंड्री लगी हुई है ग्रिल्स की लोहे की ग्रिल्स की बाउंड्री ।

ग्राउंड दिख रहा है एक क्रिकेट पिच दिख रही है बहोत ही बड़ा ग्राउंड है ये और घास लगी हुई इसकी चारों तरफ बहोत ही लंबी लंबी घास लगी हुई है।

और यहां पर जो है एडाप्टर चार्ज कुछ लगाया गया है सामने में--

मेंटेनेंस दिख रही है और टेबल लकड़ी के टेबल बैठने के लिए है।

एक बहोत बड़ा बिल्डिंग दिख रही है।